कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है इनमे से कुछ पेड़ लाल कलर के और कुछ पेड़ पीले कलर के दिखाई दे रहे है और चारो तरफ हरे कलर की --

बहुत सारे छोटे छोटे से फूल लगे हुए है एसा पीछे की तरफ एक बाउंड्री है और इसमें पेड़ दिखाई दे रहे है।

पौधे रखे हुए है और सामने की तरफ कुछ कुछ झाड़ियाँ दिखाई दे रही है और नी उपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें दो बनी हुई है इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है जो --

इसमें सामने की तरफ एक आदमी खड़ा है और एक औरत खड़ी है जोकि ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुए है।